हेलो गायस यह आप लोग देख रहे होंगे यह एक रोड है जिसमें कितने सारे आदमी दिख रहे हैं आपको यह देखिए अंडरग्राउंड यहाँ पर रोड है कितना मस्त है नजारा इस रोड का --

हेल्लो गाइस ये एक मार्केट है देखिए मार्केट में एक ओवर ब्रिज भी हैं देखिए यहाँ पर सब सिस्टम है देखिए बेचारा कैसे चल रहा है।

देखिए भी लगा हुआ है इधर साइड में देखिए बाजू में आदमी भी खड़ा हैं कुछ बेग भी दिख रहा होगा इसे इससे अंदाज़ा लगया ये बस स्टेंड हो सकता है गायस और यह बहुत ही अच्छा बस स्टैंड है गाइस जो कि देखिए आज के डेट में हर जग --

जैसे की अच्छा मौका हैं देखिए खाली हैं सन सन्नाटे में आप लोग को भी इसी में खाता खुलाना चाहिए क्योंकि आज के डेट में हर जगह भीड़ रहता है लेकीन यहां देखिए कितना खाली हैं।

हेलो गाइस आप लोग देख रहे होंगे ये एक बस स्टेंड है देखिये बस स्टेंड पे कितना सारी बस लगी हुई है सब-सब जगह जाने के लिए रुके हुये है।

हेलो गाइस यह एक हॉस्पिटल है जहां बेड में ये पड़ा हुआ बेचारा उसको बीमारी है देखिए कितना अच्छा है ये देखिए इसको कितना सिस्टम से रखा गया है।

हेल्लो गाइस ये सरस्वती पुस्तक भंडार है जहां पर सभी स्कूल और कॉलेज की पुस्तक मिलती है।

हेल्लो गाइस आप लोग देख रहे होंगे ये एक मम वर्ल्ड फेयर मै मैदान है देखिए इसके बारे में आप लोगो को देखिए कितने सारे यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीके से डेकोरेट किया गया है इसको।

हेलो गाइज आप लोग देख रहे हैं की यह एक अ अ जेंट्स का पार्लर है जिसमें एक आदमी अपना वो फेशियल करवा रहा है और बाकी मेंबर्स वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं।

बाइक स्टॉप है जहाँ पर सभी गाड़ियों की धुलाई होती है और सभी चीज़ो की मरम्मत होती है।